इस फोटो में एक बहुत बड़ी कैन मशीन दिखाई दे रही है।

इसमे बच्चो को लाने वाली एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

बड़ी नदी का लिया गया है।

जो ए_टी_एम में पैसे निकालने के लिए लाइन लगाए हुए हैं।

तथा मकान सफेद कलर से पता हुआ है।

यह फोटो एक रेस्टुरेंट का है जिसमें--

काफी सोफे व टेबल्स लगी है।

अर्थात जो बाल कटवा रहा है।